ये स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है जैसे मतलब कोई पालने वाला मछली पालने जैसा नहीं होता वैसा बना हुआ है जिसमे तालाब --

ये बर्थडे केक रखा हुआ है।

लाल पीला सफ़ेद हरा और नीले लर का झंडा है।

ए ऊपर व्यक्ति पड़े हुए खड़ा है।